जिसमें काफी सारे लोग ईसाई जी के पंडित को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं।

ये फोटो नाइट की है जिसमें एक आदमी शॉप के अंदर दिखाई दे रहा है और पूरी शॉप के किताबों पेंसिलो से रंग-बिरंगे किताबों से भरी पड़ी हुई है जिसमें बल्ब जल रहा है।

यह किसी समारोह की फोटो लग रही है जिसमें काफी सारे लड़कियों ने भाग लिए हुए हैं सा और ये किसी फोटो के लिए सारी एक साथ बैठी हुई हैं जिसमें इनका फोटो लिया जा रहा है।

इसमें बहोत बड़ी मछली दिखाई दे रही है जिसका फोटो क्लिक कर रहा है कोई और कुछ लोग उसको देख रहे हैं। आस पास काफी सारे ओटो खड़े हुए हैं।

ये फोटो भी किसी कैफ़े का है जिसमें बाहर खड़े होकर एक आदमी अपना फोटो खींच रहा है।